बहुत ही खूबसूरती से उस स्टेज को फूलों से डेकोरेट किया गया है।

सीन्टेक्स का कलर ब्लैक है।

बड़ी पेड़ भी नजर आ रही है।

ट्रेन की पटरियों पे गठिया भी नजर आ रही हैं।

इस दृश्य में एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

यह दृश्य में एक जावा का शोरूम दिखाई दे रहा है।

कुर्सी के काउंटर के पास एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है।

उसके बाहर लगी हुई एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

बैनर लगाकर शर्मा अल्युमिनियम फर्नीचर एंड ग्लास लिखा हुआ नजर आ रहा है।

कुछ बाईकें भी पार्क की हुई हैं।

गेंदे के फूल से डेकोरेशन भी की हुई नजर आ रही है।

उस बच्चे ने रेड कलर की शूज पहनी हुई है।

जिम के अंदर बहुत से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में एक राजमती चिकित्सा केंद्र नजर आ रहा है।

साइड में सीमेंट भी रखी हुई नजर आ रही है।

बाइक के शोरूम के अंदर बहोत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

टेबल के ऊपर टिशु और ग्लास भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।